अमरुद के बाग़ में अमरुद तोड़ता हुआ --

भोपू है बड़ी लाइट है डी_जे लगा रखा है ।

कंपनी एरिया का फोटो है।

इसके अन्दर थोड़े बहोत पेड़ उग रहे है ।

कंपनी वालो की इसके अन्दर आंकड़े --

इंस्ट्रूमेंट औज़ार वगैरा रखे हुए दिखाई दे रहै है बहुत पुराने है ।

गोदाम के पास में एक वेयरहाउस बनाया हुआ है।

नए कपड़े पहेन कर फोटो क्लिक करवाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पोंगल के ऊपर का दृश्य है जहाँ पर --

पोस्टर लगा रखे है।

के अन्दर एक सरिये --

सीमेंट भरते हुए दिखाई दे रहे है।

जहाँ पर रोड के एरिये --

यहाँ पर लंच के टाइम में ये सभी --

यह एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है।

प्ले स्कूल --

इसका उदय उद्घाटन आज ही किया गया है।

फ़ोन से फोटो क्लिक --

स्मार्ट वाच पेहन रखी है और इसके हाथ में फ़ोन है ।